यहां से हमें लगता है व्यक्ति जाते आते हैं घूमने आते हैं और साइड में एक बाउंड्री --

ये एक घोड़े का तबेला है जहां पर पांच घोड़े हैं।

मिट्टी यहां की गली है और पानी भरा हुआ है।

और फर्श पे ऑरेंज कलर का बुरादा छिड़का हुआ है।

का घर है एक मोर का स्टैच्यु रखा है।

ये एक बगीचा है जिसके अंदर ऑरेंज कलर का एक हाल है।

होटल प्रीति के जस्ट बाहर छे सात बाइक और स्कूटी खड़ी हुई हैं।

ये एक बड़ा रूम है जिसमें बहोत सारी लाइटें जल रही है।